यहाँ एक अ ग्राउन्ड है जिसके बीच में एक अ प्रतिमा बनी हुई है।

सामने की ओर गेट के बाहर एक पंडाल है जिसमे बहुत सारे व्यक्ति कतार लगा के भोजन कर रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसके अन्दर बहुत सारी टेबल व चेयर रखी हई है चेयर पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ --

आगे की तरफ बहुत सारी चेयर रखी हुई है जिनका कलर रेड है तथा दो व्यक्ति ऊपर की तरफ आ रहे है लाइट ऑफ है।

आसपास घर बने हुए है बगल मे कुत्ते बैठे हुए है।

एक एच.पी. का बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर भारत पेट्रोलियम पेट्रोल एंड डीजल लिखा हुआ है।

तथा पीछे की साइड में एक पेट्रोलियम पेट्रोल टैंक है । आस पास दीवार तरफ बाउंड्री बनाई गई है तथा पेड़ पौधे उगे हुए हैं आसमान मे सफेद कलर के बादल हैं ।